ड्राइ क्लीनर्स का दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति आदमी --

चित्र छत से लिया गया है।

यह चित्र फार्म हाउस का दिखाई दे रहा है इसमे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बच्चो के इसमे पानी दवाई डालते हैं जिससे बहुत ही साफ रहता है।

इस चित्र में छोटा सा घर दिखाई दे रहा है नीचे एक स्टेशनरी बनी घर के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है पीछे कुछ व्यक्ति दिख रहे है जिस स्टेशनरी पर दुकान पर खड़े हुए है।

यह चित्र एक मैदान का दिख रहा है सामने हरे-भरे पेड़ सामने एक जंगल दिखाई दे रह है पीछे की तरफ एक छोटा सा घर बना हुआ है।